यहां पर अलग अलग तरह के साड़िया--

रात का यह दृश्य है कंस्ट्रक्शन की साइट यहां पर चल रही है।

यहां पर खिड़की से रोशनी अंदर आती हुई दिख र--

एक बड़ी सी टैटू शॉप यहां पर दिखाई दे रही--

और यह बहोत बड़ी शॉप दिख रहीं हैं।

सीट कवर्स तरह तरह के साइकल के बाइक के--

इंडस्ट्रियल इलाका है पूरा इंडस्ट्रियल बिल्ड दिख रहा है तरह तरह की यहां पर कंपनियां दिखाई दे रही हैं फैक्ट्रियां दिख रही हैं।

हमें अ व्हाइट कलर के पर्दे दिखा रहे हैं और--

अलग अलग रेक्स बने हुए हैं इस रैक में हमें बहोत सारी किताबें जमी हुई दिखाई दे रही है।

प्राकृतिक दृश्य देखने को मिल रहा है।

घास सुख रही है नदी में पानी भी गहेरा लगा हुआ दिख रहा है।

ऊपर की तरफ कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमे एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है।

और यहां पर छोटे छोटे से बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बुक डिपो हैं बुक सेंटर हैं यहाँ हर क्लासेस की बच्चों की यहाँ पर किताबें अवेलेबल रेहती हैं।

अ लाइन बाय लाइन जमी हुई रखी हुई है।

यहाँ पर हमें एक स्विमिंग पूल दिख रहा है इस स्विमिंग पूल में बहोत सारे लोग इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत ही ट्रैफिक वाला यह एरिया है जहां से कि साइकिल टांगा जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर हमें एक बैंक भी दिखाई दे रहा है जिस पर बंधन बैंक लिखा है।

इस ग्राउंड में हमें बहोत सारे लोग रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां करटन्स मैरून कलर के लगे हैं।

और अंदर की तरफ देखें तो एक ही पैटर्न के साड़ी के यहां--

यहां पर कैरेट्स में अलग अलग तरह के फ्रूट और सब्जियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में हमें अह एक हॉल दिख रहा है इस हॉल में हमें बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं।

अह बनाते हुए दिखाई दे रही है।

बाहर की तरफ एक कच्ची रोड जा रही--

यहाँ पर हमें एक सैनिक स साइकिल मार्ट का बोर्ड दिख रहा है।